पोस्टर लगा हुआ है भारत पेट्रोलियम का पंप का पोस्टर पीला है बाहर में बाइक लगा हुआ है गेट का रंग भूरा है।

यहां एक गैंडा है गैंडा से पानी निकल रहा है गैंडा पे एक बच्चा बैठा हुआ है उसके बगल में एक आदमी खड़ा है।

ये एक बड़ा सा ग्राउंड है मैक ए_जी ढाबा है उधर बिल्डिंग है बड़ा सा--

छः-सात पिलल ढला रहे हैं तीन-चार आदमी यहाँ हैं उधर टेंट लगा हुआ है मिस्त्री लगा हुआ है बालू गिरा हुआ है।

यह गंगा नदी है गंगा नदी में लोग स्नान कर रहे हैं वोट लगा हुआ है।

ये एक चिल्ड्रेन स्कूल है यहां पे टीचर बच्चे को जादू सीख रहे हैं जादूगर है।

यह एक पुल है पुल में नदी है नदी के ऊपर पुल है राज वृक्ष है बड़ा सा मैदान है पीछे जंगल है।

रोड है गाछ वृक्ष है पीछे घर है पीछे प कंपाउंड है।